इस तस्वीर में मुझे कुछ सजावट दिखा--

दे रही हैं इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दी--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

मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक गेट --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

इस तस्वीर में मुझे कुछ शेल्फ दिखा--

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बहुत सारे पेड़ दिखा--

यहा मुझे एक कैमरा दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे कुछ सजावट दिखा--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

इस तस्वीर में मुझे कुछ काउंटर दिखा --